ये सब सरकारी भवन हे यहाँ भारत का झंडा लहरा रहा हैं।

यह बिरयानी एंड तन्दूर सेन्टर है यहाँ बिरयानी बेचा जाता है लोग बिरयानी खाने आते है बहुत अच्छा बिरयानी बनाया जाता होगा--

बाकी दोनों त ओर पानी बह रही है पेड़ है कुछ खेती लगाया गया है लगता है पूल टाइप दिख रहा है दूर में बादल भी दिखाई दे रहे है।

दवाइयास मिलती होगी सभी प्रकार के--

यह चर्च है यहाँ क्रिश्चियन लोग अपना प्रे करने आते हैं।

फोटो खींचा रहै है पानी बह रहा है पत्थरी इलाका है पेड़ है मौसम अच्छा है सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है।